बीचो बिच में बाटू वल अ रू पटी ग्युं और सरसों हरी सब्जी कई टा तुन और ये मजाल ले जारोओ में बाजु बो ली हु और ये खेत।

जंगल फोटो छू और यिमा बहोत है वू छिन बोर्ड छिन और यिमे और डुंगा मा बिच बिच में मूर्ति ले बणी सी।

ये पाली हाउस छो और इमें बहोत ही ज्यादा टमाटर और भोत --